एक दूल्हा दिखाई दे रहा है वह दूल्हा स्टेज पर खड़ा हुआ है।

उस व्हाट्सएप पर एक माला लगी हुईं हैं।

कैनन निकॉन सोनी सैनडिस्क --

एक लॉन नजर आ रहा है उस लॉन में--

एक कार खड़ी है उस कार का नाम क्रेटा है।

उस क्लासरूम में कुछ छात्राएँ और कुछ छात्र --

इस रोड पर एक हाथ गाड़ी पर मछली रखी हुई है।

मुझे इस चित्र में एक हॉल नजर आ रहा है।

इस रेस्टोरेंट में कस्टमर खाना खा रहे हैं।

मुझे इस चित्र में एक सड़क नजर आ रही है।

मुझे इस चित्र में एक नधी दिखाई दे रही है।

उस मंदिर में दीपक जला हुआ है।

मुझे इस चित्र में ग्राउंड नजर आ रहा है उस ग्राउंड पर एक जे_सी_बी --

एक आदमी फूलों की दुकान लगाए हुए दिखाई--

मुझे इस चित्र में एक कारखाना नजर आ रहा है।